यह किसी जगह पर लाइन से बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है | बिल्डिंग के सामने खाली मैदान पड़ा हुआ है| एक पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है| यहाँ पे लाइन से बाइक और साइकिल खड़ी हुई दिख रही है।

इस मैरिज हाल में काफी सुंदर से सजावट की गई है। काफी रंग-बिरंगे फूल लगाए गए हैं। मैरिज हॉल में --

सामने और एक सफेद रंग की बड़ी सी कार खड़ी हुई है और एक ब्लैक कलर की बाइक भी दिख रही है सामने और एक बड़ा सा खेत दिख रहा है जिस पर ऊंचे-ऊंचे पेड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस मैदान के चारो तरफ ऊँचे ऊँचे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरी तरफ काफी हरियाली दिखाई दे रही है बीच में एक सफे सफेद चबूतरा भी नजर आ रहा ह और इसके बीचों बीच एक खम्भा भी दिखाई दे रिया है।